हमें यहां पर बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और कुछ हमें इस पानी में अ ग्रीन ग्रीन बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

चिड़िया भी दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग में हमें बहुत सारे जंगले दिखाई दे रहे हैं सामने नीचे हमें रोड दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर जिसमें लिखा हुआ है आई.सी.आई.सी.आई. बैंक .